फोटो में हमें कुछ माकान दिखाई --

मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर--

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ यात्री आते जाते दिखाई--

इस फोटो में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पर--

दे रहा है जहां पर बहुत सारे पंखे दिखाई--

इस फोटो में हमें एक --

और कुछ यात्रीगण आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

दे रही है और बहोत सारे लैपटॉप भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं और कुछ बैलूंस भी लगे हुए हैं।

और कुछ यात्री आते जाते दिखाई--

दे रही है जिसमें कुछ सामान दिखाई--

कुछ यात्री आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

रही है और कुछ यात्री आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा--

ऑटो में हमें बहोत सारी बिल्डिंगस दिखाई--

हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।